कलम भी रखा हुआ है और मोबाइल स्टैंड रखा हुआ है।

श्री दातार प्लाईवुड नाम का यह एक दुकान है।

और एक रोड है जिसके उस पार एल_आई_सी लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारे श्रद्धांजलु पूजा करने आए हैं।

यह सुबह का चित्र है जो कि छत के उपर से देख रहा व्यक्ति खिंचा है।

जिसमें एक एल_सी_डी दिख रहा है।

उसके बगल में एक स्विच है और एक व्यक्ति का पैर दिख रहा है।

बगल में बहुत सारे व्यक्ति जा आ रहे है।

सबके पीछे एक तार का पेड़ दिख रहा है।

यह एक लांव की लली का चित्र है।

इसके नीचे बहुत घास है।

और उसके बगल में भी एक घर है।

पहाड़ के पीछे एक टावर दिख रहा है।

और उसके आगे एक मोटरसाइकिल खड़ा है उसके बगल में एक गढ़ा भी है।